लोग रंग बिरंगी टी शर्ट और पैंट पहेनकर वॉकिंग कर रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

अ दोनों लोगों ने ऑरेंज कलर का--

और ये बिल्डिंग काफी बड़ी लग रही है एक स्टैचू भी है बाहर में।

पेट्रोल पंप की छत को नीले कलर से रंगा गया है।

जो फोटो खींच रहा है उसके सर पे एक टोपी भी है।

और दो तीन लोग जो काम चल रहा है जिसे गड्ढा बना है उसी गड्ढे की तरफ लोग देख रहे हैं।

ये कोई किचन का फोटो है किचन के अंदर बड़े बड़े बर्तन में कुछ खाने का सामान रखा हुआ हैं।

और ये ल यहां पर इनके बैकग्राउंड में काफी डेकोरेट --

ये एक जिम का व्यू है जिम के अंदर जिम का--

ये एक व्यू है यहां पर--

और जो पर्दा से जो डेकोरेट किया हुआ है वो पर्पल और वाइट और येलो कलर में है।

सोफा जो है वो कत्था कलर मे है।

यहाॅं पर हम देख रहें हैं काफी सारे बच्चे हैं एक दो बस भी खड़ी हैं।

और उसने अपने कंधे पर एक मफलर नुमा--